कुछ आदमी चलते हुए भी नज़र आ रहें हैं।

बड़े-बड़े पौधे भी दिखाई दे रहें हैं। बहुत सारे खेत दिखाई दे रहें हैं। जूते हुए खेत दिखाई दे रहें हैं।

अलग-अलग कलर से बनाया गया है। छोटे गमले में पौधा लगाया गया है। छोटे-छोटे पौधे भी दिखाई दे रहें हैं।